चुन्नी घागरा साड़ी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

दो आदमी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लाइटिंग जल रही है वायर दिखाई दे रही है।

दांत का दवा खाना लिखा हुआ नजर आ रहा है।

एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वाइट और ग्रे कलर का--

डस्टर दिखाई दे रहा है स्पीकर लगे हुए हैं पंखे लगे हुए नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर का दिवाल है बड़ा सा हॉल है।

इनमे एक नीले कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा जिसमें गणतंत्र द्वार लिखा हुआ नजर आ रहा है झंडा बना हुआ है।

हमें लाल कलर की दीवार दिखाई दे रही है जिसमें ब्लैक कलर का व्यू नज़र आ रहे है येलो बोर्ड दिखाई दे रहा है।

और एक औरत लाल कलर का चुनरी ढके हुए नज़र आ रही है एक लड़की से बात करते हुए सामने एक बड़ा व्हाइट कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है।

भुरे रंग का टेबल है जिसमें बहुत सारी घड़ियां रखी हुई नजर आ रही हैं प्लास्टिक के चॉकलेट्स के--

यह कपड़े की होल सेल दिखा नजर आ रही है बहोत सारे कपडे दिखाई दे रहे है।

दो स्टूल रखे हुए हैं व्हाइट ब्राउन कलर के कुछ बना हुआ नजर आ रहा है।

दीवान हॉस्पिटल लिखा हुआ है दुकान नजर आ रही है गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

भूरे रंग का एक लकड़ी का बोर्ड बना हुवा हैं इसे पिंक कलर से हॉस्पिटल लिखा हैं।

यह कपड़े किसी दुकान नजर आ रही हैं कच की खाने वाले इसमें बहोत सारे कपड़े रखाए नजर आ रहे है।

व्हाइट कलर का टेबल है जिसमें एक आदमी साड़ी दिखाता हुआ नजर आ रहा है एक औरत है।

सामने एक होटल नजर आ रहा है दो पर्दे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कांच का शॉप दिखाई दे रहा है दो लड़के नजर आ रहे हैं जाते हुए अंदर सीढी बनी हुई है।